बोट के पास तीन व्यक्ति खड़े हुए नजर आ रहे हैं दो व्यक्ति सफ़ेद रंग की कमीज पहने आगे की ओर खड़े नजर आ रहे है वह एक व्यक्ति पीछे की ओर एक बड़ा डंडा पकड़ते हुए नजर आ रहा है आसमान का रंग साफ नजर आ रहा है।